यह छायाचित्र किसी दुकान का है इस दुकान में बहुत सारे वाद्य यंत्र रखे हुए हैं बहुत सारे कपड़े के बैग रखे हुए हैं।

वाहनों की संख्या सात है सामने एक चैनल गेट भी है।

यह छाया चित्र किसी कक्षा का है जहां विद्यार्थी दो कतारों में बैठे हुए है।